और एक दुकान के पीछे साइड में एक सिलाई मशीन रखी हुई है अ जो कि यह बहोत पुरानी --

यहाँ पर कुछ कार्यालय बना हुआ है और कार्यालय के बाहर बोहोत सारी पार्किंग में अ बाइक वगैरह खड़ी हुई हैं और कुछ अ कार वगैरह खड़ी हुई हैं।

दो बड़े बड़े कुछ कंटेनर रखे हुए हैं।

यहाँ पर कुछ अ झींगे टाइप के रखे हैं अ जोकि बहुत सारे एक पोलीथिन में रखे हैं।

यहाँ पर कुछ होम डेकोरेटिव आइटम्स रखा हैं अ कोरेशन के लिए। अ यहाँ पर कुछ जेन्ट्सों के --

और यहाँ पे जो ज्वेलर्स की दुकान है उनकी गेट पर कुछ फूलों की मालायें लगी हुई हैं और बाहर कुछ बाइक वगैरह खड़ी हुई हैं ।

यहां पर किसी चीज का शोरूम है और अ जिसके बाहर अ कुछ घमले वगैरह रखे हुए हैं। जो उम् प्लांट वगैरह रखे हुए हैं।

एक चेयर रखी हुई है और जो कि केबिन टाइप के बने हुए हैंअ जिसमें --

यहां पर एक अ शादी का या किसी प्रोग्राम का फंक्शन चल रहा है जिसमें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और यह फूलों के फ्लावर के द्वारा --

एक अंडे रखे हुए हैं। पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी घास टाइप की लगी हुई है। दूर्वा टाइप की लगी हुई है।

यहाँ पर एक हॉस्पिटल का कोर्रिडोरयम है और जो कि यहाँ पर फाइबर की चेयर लगी हुई है टू साइडेड चेयर हैं और एक घड़ी लगी हुई है दीवाल घड़ी है।